मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के एक्सटेंशन ट्यूटोरियल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम एक्सटेंशन या ऐड ऑन एक्सटेंशन संस्थापित करने अनुशंसित एक्सटेंशन के बारे में सीखेंगे
यहाँ हम उबंटू 1004 पर फ़ायरफ़ॉक्स वर्ज़न 70 का इस्तेमाल कर रहे हैं
अब फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउजर खोलें
डिफ़ॉल्ट रूप से याहू होम पेज खुलता है
एक्सटेंशन या ऐड ऑन क्या हैं
एक्सटेंशन्स आपको फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र के लिए नई सुविधाएँ जोड़ने मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने अपनी प्रेफेरंसेस के अनुरूप फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र को अनुकूलित करने की अनुमति देता है
एक्सटेंशन्स फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र के भाग हैं
और ब्राउज़र की क्षमताओं का विस्तार करते हैं
उदाहरण के लिए आप एक्सटेंशन्स संस्थापित कर सकते हैं जो विज्ञापनों या पॉपअप्स ब्लॉक करे वस्तुओं की कीमतों की तुलना करे और मौसम की अपडेट भी प्रदर्शित करे
ग्रैब एंड ड्रैग एक्सटेंशन संस्थापित करें
ग्रैब एंड ड्रैग आपको विभिन्न तरीकों में वेब पेज स्क्रॉल करने देता है
यह अडोबे एक्रोबैट के ग्रैब और ड्रैग फ़ंक्शन के समान है
मेनू बार से टूल्स और add ओन्स क्लिक करें
add ओन्स मैनेजर टैब खुलता है
वैकल्पिक रूप से add ओन्स मैनेजर टैब खोलने के लिए आप Ctrl Shift आ की एक साथ दबा सकते हैं
add ओन्स मैनेजर में बायाँ पैनल उपलब्ध ऑप्शन्स प्रदर्शित करता है
ध्यान दें डिफ़ॉल्ट रूप से ऑप्शन गेट add ओन्स चुनित है
दायाँ पैनल बाएं पैनल में चुनित ऑप्शन की जानकारी प्रदर्शित करता है
तो दायाँ पैनल add ओन्स को परिभाषित करता है और आपको बताता है की ऐड ऑन के साथ कैसे आरंभ करें
यह कुछ ऐड ऑन की सूची भी देता है जिन्हें आप संस्थापित कर सकते हैं
अब हम नया ऐड ऑन ग्रैब एंड ड्रैग संस्थापित करेंगे
सबसे पहले ऊपर से दाएँ कोने में स्थित सर्च बार में ग्रैब एंड ड्रैग टाइप करें
Enter दबाएँ
दायाँ पैनल अब ऐड ऑन की सूची बनाता है जो कि खोजे गए नाम से मेल खाता हो
यह भी ध्यान दें कि सभी ऐड ऑन जिनके शीर्षक में ड्रैग शब्द है वह प्रदर्शित हुए हैं
ध्यान दें कि सूची में पहला नाम ग्रैब एंड ड्रैग एक सटीक मेल है
इंस्टॉल पर क्लिक करें
ज्यादातर सॉफ्टवेयर की तरह कुछ ऐड ऑन्स में भी end यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट्स हो सकता है
end यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट डायलॉग बॉक्स पर एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल पर क्लिक करें
ऐड ऑन डाउनलोड प्रगति बार प्रदर्शित होता है
आगे एक संदेश प्रदर्शित होता है कि ऐड ऑन संस्थापित होगा जब आप मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स रिस्टार्ट करेंगे
रेस्टार्ट नोव पर क्लिक करें
फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र बंद होता हैऔर फिर से खुलता है
नए टैब में add ओन्स मैनेजर खुलता है
ध्यान दें कि ग्रैब एंड ड्रैग एक्सटेंशन एक्सटेंशंस टैब के दाएँ पैनल में प्रदर्शित होता है
पिछले चरणों का अनुकरण करके अन्य एक्सटेंशन स्क्रैप बुक संस्थापित करें
स्क्रैप बुक आप को वेब पेज के संग्रह को सेव करने और प्रबंधन करने की अनुमति देता है
ध्यान दें कि इंस्टालेशन प्रगति बार और फ़ायरफ़ॉक्स को बंद करने और रीस्टार्ट करने के संदेश अलग से प्रदर्शित नहीं होते हैं
वे स्क्रैप बुक बार में प्रदर्शित होते हैं
रेस्टार्ट नोव पर क्लिक करें
स्क्रैप बुक फ़ायरफ़ॉक्स में संस्थापित हो चुका है
इस ट्यूटोरियल को रोकें और यह नियत कार्य करें
फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र में add ओन्स मैनेजर खोलें
गेट add ओन्स ऑप्शन में फीचर्ड add ओन्स सूची से एक नया ऐड ऑन संस्थापित करें
add ओन्स मैनेजर में एक्सटेंशंस ऑप्शन का उपयोग करके आप एक्सटेंशन्स का प्रबंधन करें अर्थात उन्हें जोड़ना डिलीट करना या अपडेट करना
फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र में add ओन्स मैनेजर टैब पर क्लिक करें
बायें पैनल से एक्सटेंशंस पर क्लिक करें
दाएँ पैनल अब आपके कंप्यूटर पर संस्थापित किये हुए एक्सटेंशन्स दिखाता है
स्क्रैप बुक के बारे में अधिक जानने के लिए इसे चुनें और मोरे पर क्लिक करें
स्क्रैप बुक के बारे में विवरण प्रदर्शित होते हैं
एक्सटेंशन के बारे में जानने के लिए वेबसाइट लिंक पर क्लिक करें
अब बाएँ पैनल से एक्सटेंशन ऑप्शन पर क्लिक करें
ध्यान दें कि प्रत्येक एक्सटेंशन के लिए आप प्रिफ्रेंसेस निर्धारित कर सकते हैं उनको निष्क्रिय या हटा सकते हैं
ग्रैब एंड ड्रैग चुनें और प्रेफरेंस पर क्लिक करें
आप इस डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके अपनी प्रिफ्रेंसेस सेट कर सकते हैं
डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए कैंसेल पर क्लिक करें
अब स्क्रैप बुक चुनें और प्रेफरेंस पर क्लिक करें
ध्यान दें कि स्क्रैप बुक आप्शंस डायलॉग बॉक्स ग्रैब एंड ड्रैग प्रेफरेंस डायलॉग बॉक्स से अलग है
इसलिए हर एक्सटेंशन की भिन्न सेटिंग्स होती हैं जो बदली जा सकती हैं
अगर एक एक्सटेंशन के लिए प्रेफरेंस बटन दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब है कि इसके लिए कोई प्रिफ्रेन्सेस नहीं है
स्क्रैप बुक आप्शंस डायलॉग बॉक्स बंद करने के लिए क्लोज Closपर क्लिक करें
ज्यादातर सॉफ्टवेयर की तरह ऐड ऑन्स भी नियमित रूप से अपडेट किये जाते हैं
स्क्रैप बुक अपडेट करने के लिए उसे चुने राइट क्लिक करें और फाइंड अपडेट्स पर क्लिक करें
अगर अपडेट्स पाए जाते हैं तो अपडेट बटन प्रदर्शित होता है
ऐड ऑन अपडेट करने के लिए उस पर क्लिक करें
क्योंकि यहाँ स्क्रैप बुक के लिए कोई अपडेट्स नहीं हैं इसलिये अपडेट बटन प्रदर्शित नहीं होता है
अंततः अगर आप एक्सटेंशन का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो डिसेबल पर बटन क्लिक करें
और अपने कंप्यूटर से एक्सटेंशन को निकालने के लिए रोमूव पर क्लिक करें
हमने एक्सटेंशन के बारे में सब कुछ सीखा
अब आप फ़ायरफ़ॉक्स में अधिक कार्यशीलता जोड़कर कार्यों को कारगर बनाने के लिए एक्सटेंशन्स का उपयोग कर सकते हैं
आप असंख्य ऐड ऑन के बारे में जानने के लिए गेट add ओन्स ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं
फिर आप सबसे अधिक प्रासंगिक या उपयोगी ऐड ऑन को चुन कर संस्थापित कर सकते हैं
फायरफॉक्स एक्सटेंशंस के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया फ़ायरफ़ॉक्स वेबसाइट पर जाएँ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
इस ट्यूटोरियल में हमने एक्सटेंशन या ऐड ऑन एक्सटेंशन संस्थापित करने अनुशंसित एक्सटेंशन के बारे में सीखा
यहां आपके लिए एक नियत कार्य है
वेबमेल नोटिफायर एक्सटेंशन खोजें और इसे अपने कंप्यूटर पर संस्थापित करें
इस एक्सटेंशन की सुविधाओं के बारे में पता करें और अपने मेल खाते से अपठित मेल की जांच करने के लिए इनका उपयोग कैसे करें
एक्सटेंशन को अक्षम करें
उसके बाद इसे फ़ायरफ़ॉक्स से निकाल दें
निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
जिसे भारत सरकार के एमएचआरडी मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने आई सीटी के माध्यम से समर्थित किया है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद